तथा ग्राउंड के चारो तरफ पेड़-पौधे भी है और सामने सनसेट भी अच्छा दिखाई दे रहा है सूरज और ऊपर अच्छा आसमान खुला आसमान है।

प्लश का निशान और मूर्ति है तथा पीछे भी सफेद रंग की दिवार है तथा आगे कई गुलदस्ते --

पेड़ भी है तथा हाउस के बगल-अगल कई दीवार भी है खुला आसमान है।

इस फोटो में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है तथा कुछ बैठे हैं तो कुछ लोग खड़े है ।

इस फोटो के अंदर बहुत बड़ा --

इस फोटो में एक गेट है | गेट के चारो तरफ दीवार है दीवार स्लेटी कलर की है तथा दिवार के ऊपर भी --

नीले कलर का डिज़ाइन बना रखा है और निचे होल्डर रख रखा है तथा गेट लोहे का है और अगल-बगल भी दिवार बना रखी है।

कार एक मॉल के अंदर है मॉल की दो सीढ़ियां दिखाई दे रही है।

पोस्टर लगा रखे हैं तथा झालर रंग-बिरंगे पन्नियों के लगा रखे हैं और अंदर --

इस फोटो के अंदर हम देख सकते है की एक व्यक्ति खड़ा है तथा उसके अगल बगल कई सारे सामान मशीन है ।

हम देख सकते है की इस ग्राउंड में बहुत सारे लोग नीचे भूमि पर कालीन बिछा कर नीले रंग की योग कर रहे हैं तथा ग्राउंड में --

घर है सफ़ेद रंग का और छोटे-छोटे बगीचे भी है। ग्राउंड को चारो ओर से जाल से ढांक रखा है ग्राउंड के अगल-बगल पेड़-पौधे और घर है सफ़ेद रंग के।

यह फोटो में एक बहुत बड़ा मैदान नज़र आ रहा है जिसका गेट लोहे का है तथा दिवार सतरंगी और गुलाबी रंग की है तथा --

चेयर पे बैठा हुआ है तथा एक पाइप भी दिखाई दे रही है और भूमि का कलर नीले रंग का है जिसपे कई प्रकार के टैटू बने हुए हैं।

एक साइड बहुत बड़ा पेड़ चारो ओर दिखाई दे रहा है तो एक साइड बहुत बड़ा हाउस और छोटा हाउस दिखाई दे रहा है एक बड़ा हाउस --

इस फोटो के अंदर हम देख सकते है की एक साइड झीना है जो की नीचे उतर रहे है लोग तथा दूसरी तरफ माल गाड़ी और दूसरी पटरी पर रेलगाड़ी है ।

गाड़ियां इधर-उधर जा रही है सड़क के किनारे पेड़ और--

पे पोस्टर लगा हुआ है सफेद रंग की दीवार है और खिड़कियाँ हैं ।

कुछ लोग जमीन पे कालीन पे बैठे हुए है लेटे हुए है तो कुछ लोग सफ़ेद कपड़ा पहने के खड़े हो रखे है तथा एक मशीन है जो धुआ छोड़ रही है दीवार का कलर पीच --

तथा मैदान के अंदर एक हाउस वहाँ पे कई सारी गाडियां खड़ी हो रखी हैं ।

और बगल में एक सफ़ेद रंग की कार भी खड़ी हो रखी है तथा भवन के पे एक व्यक्ति भी खड़ा हो रखा है।